यहां पर हमें कप दिखाई दे रहे।

थर्मस भी धरे हुए है।

यहां पर गाड़ी भी खड़ी हुई है।

और हमें एक बैंक्वेट हॉल देखने को मिल है।

लकड़ियों की दुकान जहां पर गेट भी बनते हैं लकड़ी के--

यहां पर हमें सोफे भी दिखाई दे रहे--

बहोत चीज है जो हमको दिखाई दे रही--

तकिए भी नजर आ रहे हैं।

धरी है। एल_सी_डी भी लगी है।

यहां पर एक मैडम भी खड़ी है जो पेंट का सामान ले खड़ी है।

यहां पर हमें अल्ट्राटेक का केमिकल दिखाई दे रहा है जहां पर कुर्सी भी धरी हुई है।

ये चार आदमी हमको दिख रहे--

ये अपना घर बना रही है यहां पर भी पड़ी हुई है।

यहां पर कट्टो के ऊपर मछलियां पड़ी हुई है।

मछलियां भी बहोत सारी धरी हुई है।

ठेली पर पपीते धरे हुए हैं और यहां पर--

पाली भी दख देखने को नजर आ रही है।

यहाँ पर और यहां पर और कुछ नहीं दिख रहा है बस पपीते पपीते दिख रहे हैं।

यहां पर बहोत सी चीजें टंग रही है।

वहां पर सिमांट भी रखा हुआ है।

और चौथे नंबर की लाइन दो गिलासों से लगा रखी हैं।

केबिल भी दिखाई दे रही हैं।

इस चित्र में हमें हरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं जिसमें एलोवेरा का पेड़ भी है और --

यहां पर हमें आदमी दिखाई दे रहे--

वूफर भी लगे हुए हैं और--

यहां पर एल_इ_डी एल_सी_डी यहां पर लाइटें भी लगी हुई है।

पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर हमें ये होटल दिखाई दे रहा है जिसके अं--

इसके अंदर दारू इंग्लिश --

यहां पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और यहां पर पानी की बोतल भी--

यहां पर हमें एक ऑफिस देखने को मिल रहा है जिसमें दो आदमी फिर रहे है।

इस चित्र में हमें ए_टी_एम दिखाई दे रहा है जिस--

ऊपर में अलमारी भी धरी हुई है।

बहोत ही अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है।